ये किसी सैलून का फोटो दिखाई दे रहे हैसामने चेयर पे बैठा हुआ हैउसमे गले में एक कपड़ा पहन के रखा हैबाल के ऊपरी हिस्से में कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उपर कुछ रेलिंग वगेरा दिखाई दे ररही हैसूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा हैं कुछ झाड और पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा हैं साइड मे दिवारे दिखाईं दे रही हैं सामने जूता दिखाई दे रहा हैं थोड़ा और पानी बहुत

कांच के और लकड़ी का गेट दिखाई दे रहा है अंदर क साइड कुछ चेयर दिखाई दे रही है साइड में कुछ गमले राखी दिखाई रही है रेलिंग दिखाई दे रही है स्टील के कुछ बैलून दिखाई दे रहे है कुछ--